धूप बोहत तेज निकल रही है। दिन का टाइम है कच्ची सड़क बानी हुयी है। सड़क के ऊपर एक बड़ासा पेड़ लाहा हुआ है। कुछ साइकिलस खड़ि हूइ है। सामने एक बोर्ड वाना हूआ। जिन--